बहोत प्यारी मूर्ति मौजूद हैं।

बहुत ही सुंदर लाल रंग की छत वाला मंदिर है।

कई सारी बस्सें खड़ी हैं।

जैसा कि आप सभी लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं।

यह एक खाली सड़क है जिस पर साइड में--

इमेज में देख पा रहे हैं।

की सफेद कलर के छोटे छोटे घर मौजूद है।

कि कई सारे लोग मौजूद हैं।

इमेज में देख पा रहे हैं की--

की कई सारे बच्चे काम कर रहे हैं।

जैसा कि आप सभी लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं कि--